और एक अच्छा पंखा लगा हुआ है घड़ी लगी हुई है।

इस प्रकार से अपनी पोज खिंचवा रही है ताकि बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं और पेंटिंग सीख रहे हैं।

बाकी चारों तरफ घनेक गाड़ियां खड़ी हुई हैं इसमें कोई अल्टो आ गई कोई आई ट्वेंटी आ गई कोई रेड कलर की आ गई कोई ब्लैक कलर की आ गई।

गेट कि तरह है जोकि बहोत देखने का--